यह एक जगह है इस जगह पर बहुत सारी दुकाने हैं और यहाँ एक दुकान में बहुत सारे लोग खड़े हैं इस दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी बाल्टी रखी हुई है और यहाँ इधर बगल में कुछ महिलाये बैठी हुई हैं ।

यह एक बोहोत बड़ा घर है। इस घर को बोहोत अच्छे तरीके से बनाया गया है। इस घर के बाहर में बोहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और यह यह सब देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है। इस घर में बोहोत लोग एक साथ मिलकर रहते हैं।